रेड ब्लू और वाइट कलर का बैलून लगा हुआ है ब्लैक कलर का गेट है।

काफी सी अच्छी-सी पेंटिंग दिख रही है चार लडकियां इनके पीछे बास्केट बॉल का नेट लगा हुआ दिख रहा है।